एंड वाइट बिल्डिंग दिखाई दे रहे है पेड़ भी दे रहे है कुछ टेबल दिखाई दे रही है कुछ लोग दिखाई दे रहे है ऑटो दिखाई दे रही है बाइक दिखाई दे रही --

ऑरेंज कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा येलो कलर के टाइल्स दिखाई दे रही कार्स दिखाई दे रहे ।